यहां की जमीन बहोत कूड़े कचरे वाली है।

एक लाल कार भी दिखाई दे रही है यहां पर--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

ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत बड़ी झांकी निकाली जा रही है।

यहां एक बर्तन भी पड़ा हुआ है और हरे रंग का कपड़ा--

ये तस्वीर कुछ लोगों की है।

और यहां की जमीन कच्ची है इस पर हरि घास --

जो किसी भवन की है उस पर--

और यहां एक टेबल और कुर्सी भी रखी--

ये तस्वीर एक कमरे की है इसमें एक गोल टेबल रखा हुआ हैं और मेज और कुर्सियां भी हैं।

और दो तस्वीरें भी हैं जो--

सड़क पर ऑटो रिक्शा जा रहे हैं।

और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

ये तस्वीर दो लोगों की हैं।

थोड़ा बहुत पानी भी दिखाई दे रहा है।

और खाने का सामान भी टेबल पर रखा है।

बहोत सारे वेटर यहां खड़े हुए हैं।

और यहां पर एक बोर्ड लगा है जिस पर कन्या आश्रम लिखा गया है।

और नल भी लगे हुएं हैं।

ये तस्वीर बहोत सारे कर्मचारीयो और मजदूरों की--

कुछ कुर्सियां और टेबल भी यहां दिखाई दे रहे हैं।

ढाई गई हैं और काफी पेड़ भी लगे हुए हैं दो खंभे भी--

ये तस्वीर एक जिम की है।